यहाँ पर कुछ कार्यक्रम चल रहा है और सफेद कलर का घर भी दिखाई दे रहा है और कच्चे घर भी साइड मे दिखाई दे रहे है लाइटे जल रही है और एक बच्चा थोड़ा सा छत पर भी दिखाई दे रहा है और यहाँ कार्यक्रम--

नजर आ रहे है और पीछे कई बड़े व्यक्ति भी दिखाई दे रहे है जो की बैठे हुए है।

पेट्रोल पम्प है पेट्रोल पम्प पे काफी भीड़ दिखाई दे रही है जहाँ पर काफी पुरुष अधिक मात्रा मे दिखाई दे रहे है।

भट्टे टमाटर गाजर और यहाँ पर एक दुकानदार मतलब एक व्यक्ति भी बैठा हुआ है और एक व्यक्ति लेता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर डलियों में ये सब्जी रखी --

घर है और घर के बाहर एक औरत खड़ी हुई है और एक ओर लड़का खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और एक गाय दिखाई दे रही है जो की काले कलर की है।

माता जी की बहुत बड़ी सी झाँकी दिखाई दे रही है जिसमे अलग-अलग मूर्ति हैमाता जी की स्थापित दिखाई दे रही है।

--दे रहा है और वो शायद फोटो क्लिक करवा रहा है काफी बड़ा सा अअअअ गार्डन सा पार्क दिखाई दे रहा है यहाँ पर बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैऔर साइड में --

ऊपर नदी मे दो व्यक्ति दिखाई दे रहे है जो की एक नाव मे बैठे हुए है बोटिंग कर रहे है उन्होंने जेकिट भी पहन र--

व्यक्ति है और यहाँ पर एक व्यक्ति ने मास्क मतलब कई व्यक्तियों ने मास्क लगा रखा हुआ है यहाँ पर पुरुष और महिलाएं भी खड़ी हुई है और यहाँ पर झंडे दिखाई दे रहे है लगे हुए --